पैकेट होता है उसके अन्दर भी राखी दिखाई दे रही है यहाँ पे राखियों का कल--

वो ऐसे मोड़ लिए हुए नीचे गिरते हुए आ रही साइड साइड है ।

सामने बहोत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ जो है वो दिखाई दे रहे है वहाँ पे सामने एरोसिटी का खम्बा भी दिखाई दे रहा है ।

औरत ने जो है वो अ हरे कलर का पाइप से पानी लेते हुए पानी फेंकती हुई दिखाई दे रही है पानी का जो प्रेशर है वो उतना जादा है नहीं --

अपने को यहाँ पे एक अ लगभग एक फ्लोर का ऊँचा सा चबूतरा दिखाई दे रहा है नीचे फ्लोर पे काम चल रहा है ।

वहां पे दो जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले वर्कर है वो दिखाई पड़ रहे है ।

प्योर ब्लाक जो है वो लाइन से और ग्रे कलर --

आ आप देखोगे तो वो सुदल टाइप जो एक्सरसाइज वो करते हुए दिखाई दे रहा है सामने जो है ग्रीन कलर की मैट पड़ी हुई है।

ये फोटो जो है किसी हॉस्पिटल के जो मैन जो रिसेप्शन एरिया होता है।

और सामने जो है वो बिलिंग काउंटर के ऊपर दो एक आदमी और एक औरत खड़ी है।

और जिसका काटने के बाद जो वेसटेज है वो वेस्टटेज बचता है वो एक कोने में उसने लगाया हुआ है।

यहाँ में पर्रेल्ल में दो ब्रिज आमने-सामने दिखाई दे रहे है एक वो जो है वो पुराना वाला ब्रिज है और एक नया वाला ब्रिज दिखाई दे रहा है ।

और जहाँ पे आप देखोगे तो मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है ए पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर जो है वो मीडियम साइज़ का मंदिर है।

अ आप देखोगे तो वहां पे ब्लू कलर की जो साइनिंग बोर्ड लिखे हुए है।

और लेडीज क्लॉथ स्टोर का फोटो दिखाई दे रहा है उसका नाम जो है अशोक क्लॉथ स्टोर है ।

और कुछ लोग उसको समझा रही है बेचरी है सामने जो है एक पुतला खड़ा है।

रैक के अन्दर बहुत सारे क्लॉथ जो है।

यह फोटो जो है अपने कोई एक--

और यहाँ पे ग्राउंड पे जो है वो अपने को बहोत सारे लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

और रिद्धि सिद्धि मैरिज का डम्ब दिख रहा है एक गणपति रेस्टोरेंट ए. सी. नॉन ए. सी. रूम दिखाई दे रहा है और जो --

यह फोटो जो है अपने को एक बाइक की फोटो नजर आ रही है जोकि ऊँचे पहाड़ के जाने के बाद वहाँ पे वो बाइक खड़ी की है ।

और नीचे जो है फरसी लगी हुई है वहाँ पे एक स्टील का ग्रिल भी दिखाई दे रहा है।

और अ सामने जो है वो एक बाइबिल रखी हुई है और अ उसके सामने एक क्रॉस का एक चिन्ह हैं।

आप देखोगे तो टेबल के ऊपर लाल कलर का क्लॉथ है वो डाला हुआ हैं।

अपने को वहाँ पे उसका बोर्ड दिखाई दे रहा है आर_के कॉफ़ी स्टॉल ऐसे लिखा हुआ है और उसके ऊपर कुछ तो भी लिखा हुआ है ।

और नदी का जो पानी है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है अ पानी जो है वो क्लियर है ।

जोकि अ चमराज नगर का शाखा का है और सामने एक बंदा जो है वो --

वाइट शर्ट और जीन्स में खड़ा है उसके हाथ में जो है एक --

और सिल्वर कलर की है और दो एस्कालेटर जो है वो सामने नजर आ रहै हैं।